यहां एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं जिसपे भारत पेट्रोलियम लिखा हैं यहां एक येलो कलर का ऑटो दिखाई दे रहा हैं एक बाइक दिखाई दे रही हैं।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे है जिसमें भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है तथा यहाँ दो ट्रक दिखाई दे रहे हैं | कुछ बाइके दिखाई दे रही है | कुछ आदमिये दिखाई दे रहे है तथा रोड पे हल्की मिट्टी दिखाई दे रही है।

यह एक रोड का एरिया दिखाई दे रहा है इसके आसपास पार्किंग दिखाई दे रही है जिसपे कई सारे मोटरसाइकिल तथा दो ऑटो दिखाई दे रहें हैं एक बस रखी दिखाई दे रही है।

यहां एक खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें हल्की सी घांस दिखाई दे रही है तथा यहां कई सारे पेड़ तथा झोपड़ी बनी दिखाई दे रहा है।